जैसा कि मैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है। सफेद रंग की है यहां पे इसमें रेलिंग भी लगी है।

यहां पे जो छत है ऊपर ये सफेद रंग की है। बोहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं। बाउंड्री बनी हुई है नीले रंग से।

कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर इंडसइंड बैंक है यहाँ हुआ का जो बोर्ड है वह मैंरून रंग का है बिल्डिंग जो है वह उस कांच की --

लाइट ग्रीन शर्ट पहने या ग्रे सिलेटी रंग का पेंट है जमीन जो कि भूरे रंग की है आसमान नीला और सफेद रंग का बहुत सारी तारे पड़ी हुई है पेड़ --

मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखा हुआ है। नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है। लाल रंग का आइकेन भी बना है।

बैंक की अ यहाँ पे एक आदमी जोकि चेकदार टी-शर्ट पहने है। बाइक बॉस --

देख भाई यहां पे एक जेब्रा है। जिसके जोकि जयकाले और सफेद रंग में है। बोहोत सारी घासे मिट्टी भूरे रंग की हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक गाड़ी है जिसमें बहुत सारे साउंड लगे हुए हैं और यहाँ पे भोपू भी लगे हुए एक पीछे जनरेटर भी चल रहा है।

मैं देख पा रहीं हूँ यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं जो कि बड़े-बड़े ईटे लगे हुए हैं जो कि सिलेट --

पीछे दीवाल है। बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। यहाँ पे एक अंकल हैं जो कि सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

मैं देख पायी ये एक मंदिर है। जीने बने हुए हैं जो कि भूरे रंग के हैं। यहाँ पे रेलिंग लगी है सफेद रंग की। ऊपर जो बिल्डिंग मंदिर है वो ऊपर की जो --

मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एके फिटनेस जिम लिखा हुआ है सेलिब्रेशन किया जा रहा है बहुत सारे मेडल और गिफ्ट रखे हुए हैं गुब्बारे लगे हैं लाल काले और --